एक आदमी दिखाई दे रहा है पंडाल बना हुआ है गोल्डन कलर का इस स्टैचू टाइप का बना दिखाई दे रहा है।

एक नीले कलर का बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बहोत सारे बैंक नजर आ रहे है एक्सिस बैंक और भी स्टेट बैंक --

एक बड़ा सा कांच दिखाई दे रहा है जिम करने वाली मशीनें नजर आ रही हैं रेड कलर बॉर्डर है।

सामने एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिस का कलर ब्लू और येलो है भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ लगे नजर आ रहे हैं साइड में--

सामने एक बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है वाइट ब्लू ग्रीन पिंक कलर का जिसमें--

बाजू में एक लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं भूरे रंग का।

हमें एक व्हाइट कलर का बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें लाल रंग से मंजी ममता लिखा हुआ है।

घड़ी लगी हुई नजर आ रही है इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहा है नीले कलर का पानी का टैंक दिखाई दे रहा है भूरे रंग का कपबड बना हुआ है जिसमें --